यह फुटेज एक गांव का दिख रहा है जिसके सामने में एक बड़ा सा खेत है और उसके पीछे में--

औड़ उसके साईड में रोड हो भी बना हुआ हैं।

पिका आसमानी कलर का है इसके दोनों साइड में बैनर टंगा हुआ है।

यह फुटेज एक श्री मंदिर चौक का दिख रहा है।

और कुछ का कलर पिंक कलर है।

यह देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं।

और इसके बगल में और भी सामान पड़ा हुआ है जो कि देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं।

और सामने में कुछ लड़की लोग योगा कर रहा है।

और यहां डी कुछ सिखाने वाले भी सिखा रहे है।

इसके बगल में पेड़ भी हैं जो कि दिख नहीं रहे हैं।

यह देखने में काफी अच्छा और खूबसूरत लग रहा है।